मुझे यहाँ पर सब्जी की वे दुकान दिखाई दे रही है जो की बड़ी सी है। यहाँ पर हर किस्म की सब्जी टोकरी में भर के रखी हुई है।

मुझे यहाँ पर बड़ा सा स सड़क दिखाई दे रहा है लम्बा सा मैदान टाइप का पीछे की तरफ गार्डन दिखाई दे रहा है यहाँ पर गोल चबूतरा बना हुआ है जिसके अंदर--

बहोत सारी मशीने लगाई गई है। पीछे की तरफ मुजे एक टावर दिखाई दे रहा है।

और छोटी-छोटी सी भी घास दिखाई दे रहे ऊपर की तरफ आसमान हल्का सा दिखाई दे रहा जो की नीले और सफ़ेद रंग में इस टाइप --

मुझे यहाँ पे बड़ा सा मैदान दिखाई दे रहा है जहां पर लड़की खड़ी हुई है और--

अ फीमेल सेंटर वॉर सेंट्रल वार्ड --

खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है जिसने अपने पीछे बैग टांग रखा है उसने जीन्स पहेन रखी जूता पहेन रखा है वाइट कलर की शर्ट चश्मा लगाया हु--

यहाँ पर दो ए.सी लगी हुई दिखाई दे रही है। इसकी दीवारे--

और हलके पीले रंग के दिखाई दे रहें हैं कुछ बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहें यहाँ लाइट का खम्बा दिखाई दे रहा है ट्रांसफार्मर क --